बिजली के बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

खेलने का कुछ में ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं।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

और गत्ते के कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ी लंबी सड़क दिखाई दे रही हैं।

काफी सारे केले और सेब मौसमी अतः एक बोर्ड दिखाई दे रहा है लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है।

सभी बच्चों के पास मफलर दिखाई दे रहे हैं।

टेबल पर कुछ फूल और पानी की बोतल रखी हुई है।

हाथ में कुछ गिटार टाइप दिखाई दे रहा है।

दो शूप की कटोरी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी मेजे दिखाई दे रही है बैलून लगे हुए हैं।

काफी सारे बैग दिखाई दे रहे हैं।

नींबू रखा हुआ है मशरूम रखी हुई है।

यहां पर मुझे बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं।

कार का कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

पानी का प्रेशर पाइप दिखाई दे रहा है।

पीछे आसमान दिखाई दे रह है।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

यहां पर मुझे बहुत सारे लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत सारे सोफे दिखाई दे रहे हैं।